साइड में बहोत सारे मैट रखे हुए हैं। यहां पे एक मोटरसाइकिल रखा हुआ हैं।

और ओपन एरिया का फोटो है जहां पे बहुत सारे--

यहां पे चेयर रथा हुआ है अंदर मे टेबल रथा हुआ हैं।

एक मोटर साइकिल लगा हुआ है उसके अंदर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

बहुत सारे पेड़ हैं अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है।

लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे--

डब्बा रखा हुआ है और डब्बे बदल में एक बहुत बड़ा डब्बा रखा --

यह एक इंडस्ट्रीज का फोटो है जहां पे--

पीले और हरे रंग का बोरा रखा हुआ है बूढ़े के बगल में--

छत प पेड़ है पेड़ से बगल में तार लगा हुआ है।

बगल में बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं अंदर में ये--

में एक टेबल रखा हुआ है टेबल पे बहुत सारे मशीन रखे हुए हैं उधर साइड में एक--

मशीन रखा हुआ है ओर साइड मे बोर्ड लगा हुआ है।

नीचे में एक ग्रीन कलर का स्क्वायर बना हुआ है।

ट्राली देथ रहे है ट्राली ते बगल में बहोत सारे लोग देथ रहे है लोग ते बगल मे --

नीचे में रोड पे रॉड के रॉड पे रोड दिख रहे हैं रोड के बगल में ऊपर में बहुत सारी लाइट दिख रही हैं वहां पे साइड में एक --